इस चित्र में एगो गाड़ी दिख रहा है और साथ में टंकी भी दिखाई दे रहा हैं।

ऐसा लिखा है इस गाड़ी का नाम यू पी तेरालीस तीन जीरो सात पचासी हैं।

सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पर लाइट भी जल रहा है और साथ में बाहर लोग पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पर टाइल्स सब भी लगा हुआ हैं।

यहाँ पर चार स्कूटी दिखाई दे रहा है और एक स्कूटी लाल रंग का और एक स्कूटी सफ़ेद रंग का एक स्कूटी पीला रंग का ऐसा दिखाई दे रहा हैं।

यह रेलवे स्टेशन --

यह नदी है और यहाँ पर बहुत ऊचे-ऊचे पहाड़ दिखाई दे रहे है और साथ में मुझे लग रहा है नदी के किनारे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है और ये घर सब का हैं।

बरसात में पर केरा का पौधा भी --

यहाँ पर बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है --